उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े है एक आदमी के नाक पर तोलिया रखा हुआ है और एक आदमी व्यक्ति कोई सामान उठा रहा है।

इस तस्वीर में कुछ हरे-भरे पेड़ रखे हैं और दो बड़े से बोर्ड लगे हैं एक बोर्ड पे लिखा हुआ है ऊपरी पथ पर जाने का रास्ता और सीढ़ी बना हुआ है।

इसमें खली जगह है जहा पर क्रेन से खुदाई हो रहा है और उसके सामने बहुत बड़ा-बड़ा लोहा का पिलर टाइप रखा हुआ है एक बड़ा सा मोटा वायर रखा हुआ है।

ये दुकान की तस्वीर है जिसके बाहर तीन मोटरसाइकिल है एक हीरो की है एक ग्लैमर की है।